अगल बगल में बहुत सारा पेड़ दिख ता बहुत हरियाली बा।

एगो हलन कच कूड़ा रखे वाला डिब्बा भी बा |

परीक्षा होयल बा परीक्षा से सब गौरा आवत अ--

जिमे बहुत सारा मेगी बा याप्पी बा सेवलॉन बा डेटॉल बा और बहुत चीज बा बर्तन धोने वाला बाटे जी में बहुत सारा सामान बा।

इ देखे में लागता की कुछ नया चीज़ खुलल बा एने बहुत लाल पिला अ फुलोना टॉगल बा |

इ देखे से लगत बा की कोई नदी यहाँ से बहे ला

एगो मोटरसाइकिल वाला भी भरवा वता एगो मोटरसाइकिल पे दोगो आदमी बइठ के जाता।

इ देखे में लागता की कोई बस स्टेंड बा।